और यहां पे डस्टबिन दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का पिंक कलर का यहां पे नीचे ग्रीन और बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं टावर्स दिखाई दे रहे हैं और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है यहां पे एक रेलिंग भी दिखाई दे रही हैं।

दिखा रही है जो कि गोल्डन कलर की दिखाई दे रही दीवार पे ग्रीन ब्लू सलेटी ग्रे कलर दिखाई दे --

हैं नीचे ग्री बहोत सारी ग्रास दिखाई दे रही है जो की डार्क ग्रास दिखाई दे रही और भी बहोत कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ समान रखा हुआ दिखाई दे रहा है नीचे जामुनी कलर दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है ।